यह दृश्य हमें स्कूल का नजर--

प्रोजेक्ट वर्क करते हुई दिख रही है।

हमें बाहर एक ग्राउंड भी बना हुआ नजर आ रहा है।

कोई गिराज की तस्वीर दिखाई--

की हुई नजर आ रही है।

हमें कुछ लोग भी कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे है।

फोटो दिखाई जा रही है।

पैलेस का दिखाया जा रहा है।

आई_सी_एस सरकारी नौकरी की--

हमें एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ दिख--

घर में पेंट किया हुआ है।

इसमें प्लेयर्स भी दिख रहे हैं।

वाइट बोर्ड और बेंचेस भी लगे हुए नजर आ रही है।